सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

उसका रंग क्रीम कलर का है।

कुछ आदमी इधर उधर घूम रहे हैं।

सामने एक कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।